inkscape प्रयोग करके create and format text पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न के बारे में सीखेंगे
अंत में हम यह भी सीखेंगे कि सरल flyer कैसे बनाते हैं
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
मैं इस tutorial को अधिकतम रेज़ोल्यूशन mode में recording करुँगी यह उन सभी tools को समाहित करने के लिए है जो प्रदर्शित किये जायेंगे
अब inkscape खोलते हैं
tool box से text tool प्रयोग करके text प्रविष्ट किया जा सकता है
हम text को दो तरीकों से जोड़ सकते हैं
पहले हम regular text के बारे में सीखेंगे text tool पर click करें और फिर canvas पर click करें
शब्द spoken type करें और देखें कि text box text को समाहित करने के लिए बड़ा हो जाता है
line breaks खुद जोड़नी पड़ती हैं अतः अगली line पर जाने के लिए enter दबाएं और type करें tutorial
शब्द को पिछली line पर move करने के लिए cursor को अक्षर t से पहले रखें add backspace दबाएं और दो शब्दों के बीच में space जोड़ें
उसी तरह से spoken tutorial के नीचे नयी लाइन में type करें
आगे हम flowed text से text को प्रविष्ट करना सीखेंगे
इस बार मैं लिबरे ऑफिस writer फाइल से text copy करुँगी जो मैंने पहले सेव किया था
press text को चुनने के लिए ctrl + a दबाएं और उसे copy करने के लिए ctrl + c दबाएं
अब inkscape पर वापस आते हैं निश्चित कर लें कि text tool चयनित है
canvas पर click करें और आयताकार या वर्गाकार text क्षेत्र बनाने के लिए खींचें
ध्यान दें कि mouse button को छोड़ने पर canvas पर एक नीला आयताकार box बनता है
अब text box के अंदर text prompt जो सबसे ऊपरी बाएं कोने पर ब्लिंक कर रहा है उस पर ध्यान दें
ctrl + v दबाकर copied किये हुए text को paste करें
ध्यान दें कि text box का रंग बदलकर लाल हो गया है
ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रविष्ट किया हुआ text text box की boundaries से अधिक है
text box के दायें कोने पर छोटा diamond handle प्रयोग करके हम इसे सही कर सकते हैं
इस पर click करके तब तक खींचे जब तक रंग बदलकर नीला न हो जाए
text का आखिरी वाक्य पिछले वाक्य के साथ जोड़ा जाता है
आखिरी वाक्य को अलग करने के लिए इसकी शुरुआत में दो बार enter दबाएँ
आगे texts के लिए उपलब्ध अनेक formatting विकल्पों को सीखते हैं शब्द spoken tutorial पर click करें
main menu पर जाएँ text और फिर text and font विकल्प पर click करें
दो विकल्पों font और text के साथ एक dialog box दिखता है font टैब में अनेक विकल्प हैं
font family सारे उपलब्ध fonts को सूचीबद्ध करता है आप अपनी पसंद का कोई भी उपलब्ध font चुन सकते हैं
आप यहाँ प्रीव्यू box में चयनित font को प्रीव्यू कर सकते हैं मेरा चुनाव bitstream charter font है
चार style विकल्प normal italic bold और bold italic हैं अपनी ज़रुरत के अनुसार स्टाइल चुनें मैं bold चुनूँगी
font size को बदलने के लिए drop down arrow पर click करें और size चुनें क्योंकि यह टाइटल है मैं बड़ा font मानिए 64 चुनूँगी
अगला layout है
हम इसके बारे में थोड़ी देर में सीखेंगे क्योंकि इस विकल्प के लिए प्रीव्यू नहीं दिखता है
tab font tab के आगे वाली text tab पर click करें यहाँ text के साथ प्रीव्यू window दिखती है
यहाँ text में कोई भी बदलाव किया जा सकता है
apply पर click करें और dialog box बंद करें देखें की text अब formatted हो गया है
हम नीचे color palette प्रयोग करके text के रंग को बदल सकते हैं अब मैं maroon रंग पर click करती हूँ
अब url जोकि
text formatting विकल्प tool controls bar में भी उपलब्ध हैं
मैं फॉन्ट को bitstream charter में फॉन्ट साइज को 28 में और रंग को नीले में बदलूँगी
अब पैराग्राफ़ टेक्स्ट चुनते हैं
अगर टेक्स्ट टूल पहले से चयनित है तो आप टेक्स्ट बॉक्स में जाने के लिए बस टेक्स्ट पर क्लिक करें
मैं text का font size 25 करुँगी
canvas के अंदर text को लाने के लिए diamond handle पर click करें और खींचे
आगे texts को अलाइन करते हैं
tool controls bar पर italic icon के आगे bar icons text को निम्न की तरह अलाइन करने में मदद करते हैं text बॉक्स के
चौथा विकल्प text box की boundaries में text को justify करेगा आगे बढ़ने से पहले मैं left अलाइन पर click करुँगी
हम align and distribute विकल्प प्रयोग करके भी text को अलाइन कर सकते हैं
main menu पर जाएँ और फिर object menu पर click करें फिर align and distribute विकल्प पर click करें
अब हम शब्द spoken tutorial को centre में लाएंगे अतः इस पर click करें
पहले जाँचें अगर relative to parameter page पर set है
अतः centre on vertical axis पर click करें देखें कि text अब centre में अलाइन हो गया है
add नीचे खाली स्थान पर कुछ text जोड़ते हैं
type करें foss categories अब इसे centre on vertical axis पर क्लिक करके पेज के centre में अलाइन करें
canvas पर अलगअलग और बिना किसी क्रम के कुछ foss के names लिखें जैसे linux latex scilab python
अब इन सारे texts को एक row में समान अंतराल के साथ अलाइन करें
shift की प्रयोग करके चारों texts को चुनें
ध्यान दें कि शब्दों के बीच का अंतराल बराबर नहीं है
पहले शब्द का पहला अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर समान अंतराल पर हैं लेकिन अक्षर स्वयं समान अंतराल पर नहीं हैं
उसी तरह से यह ऊर्ध्वाधर texts के लिए भी कार्य करता है
ये विकल्प कुछ स्थितियों में उपयोगी हो सकते हैं
हम शब्दों के बीच में बराबर अंतराल रखेंगे
ऐसा करने के लिए distribute में पहली row में चौथे icon पर click करें अब शब्दों के बीच अंतराल बराबर है
आगे हम paragraph text की लाइनों के बीच के अंतराल को व्यवस्थित करना सीखेंगे
text box के अंदर जाने के लिए paragraph text पर double click करें
tool controls bar पर spacing between lines icon लाइनों के बीच स्थान को कम और ज़्यादा करने में मदद करता है
देखें कि क्या होता है जब मैं spacing को बढ़ाती हूँ
अब मैं line spacing को 150 रखती हूँ
अगला icon अक्षरों के बीच को के स्थान को व्यवस्थित करने में मदद करता है दोबारा अप और down arrows पर click करें और बदलावों को देखें
अब मैं space parameter को 0 रखती हूँ
देखें कि canvas के दोनों ऊर्ध्वाधर कोनों में खाली स्थान है हम उन्हें कुछ text से भर सकते हैं
canvas के बाहर कहीं वाक्य learn open source software for free type करें
font को ubuntu में और font size को 22 में bold और इसे bold करें
अब आखिरी icon पर click करें जोकि tool controls bar पर vertical text है
ध्यान दें कि text अब ऊर्ध्वाधर दिशा में अलाइन हो गया है
selector tool प्रयोग करके text पर click करें और इसे canvas के बाएं कोने पर लाएं
ctrl + d दबाकर इसे duplicate करें और ctrl key प्रयोग करके प्रति को पेज के एक अन्य कोने पर लाएं
add हम paragraph में text के लिए bullet points जोड़ेंगे
inkscape text के लिए bullet या number सूची नहीं प्रदान करता है अतः कोई भी bullet points अपने आप से बना सकता है
ellipse tool पर click करें लाल रंग का एक छोटा वृत्त बनाएं
अब इस bullet को paragraph की पहली line पर लाएं इसे duplicate करें और इसकी प्रति अगले वाक्य पर लाएं
सारे वाक्यों के लिए यह दोहराएं
अब हमारे पास सारा text हमारी ज़रुरत के अनुसार है
अंततः इसे flyer की तरह बनाने के लिए कुछ बेहतर करते हैं
यहाँ पूर्ण flyer है
मैंने ऊपर और नीचे borders जोड़े हैं और texts को गोलाकार किनारों वाले आयत और दीर्घवृत्त आकृतियों से कवर किया है
आप अपने flyer के लिए भिन्न लेआउट्स और डिज़ाइन्स बनाने के लिए अपनी रचनात्मकता प्रयोग कर सकते हैं
अब सारांशित करते हैं
इस tutorial में हमने सीखा
हमने एक सरल flyer बनाना भी सीखा
यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है
इस तरह का एक flyer बनाएं टेक्स्ट्स टाइप करने एक लिए टेक्स्ट टूल प्रयोग करें रेक्टेंगल टूल प्रयोग करके बुलेट्स और बॉक्सेस बनाएं
star tool प्रयोग करके 10 कोनों वाला एक star बनाएं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
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमसे संपर्क करें spoken tutorial project भारत सरकार के एम एच आर डी के आई सी टी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता mission द्वारा समर्थित है
इस mission पर अधिक जानकारी दर्शाये link पर उपलब्ध है
हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं
आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती you धन्यवाद